यह एक बहुत सुंदर सा रूम है।

इस रूम में कुछ सोफे भी रखे हुए है।

और इसके बगल में ही बहोत सारे मकान भी बने हुए है जो बहोत बड़े बड़े है।

यहां पर कुछ व्यक्ति अपना चुनाई का काम कर रहे हैं।

और इस पेट्रोल के बगल में ही एक बस भी खड़ी हुई है।

यह एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है बिल्डिंग पर काम चल रहा है।

और इस कमरे में ऊपर की ओर एक पंखा भी लगा हुआ है।

और दो बोतल भी रखी हुई है।

और यहां पर हरे भरे बहुत सारे पेड़ भी हैं।

और एक लड़की खड़ी है जो फोन चला रही है।

जिसमें बहुत बड़ी यह नदी है।

यह एक बहुत अच्छी गैरीज है।

यह एक बहुत अच्छा स्कूल है।

और यहां लीची और लाइट की मदद से बहुत अच्छा सजावट की गई है।

और यहां पर एक बहुत अच्छी सी सीनरी लगी हुई है।

यहां एक बहुत अच्छी दुकान है।

और इसके बाहर शीशा भी लगा हुआ है।

यहां पर बहुत सारे सामान रखें हुए हैं।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

और इसमें से जो बीच में दुकान है उसमें एक कुर्सी भी रखे हुए हैं।